नाइट का समय कुछ घर वर भी दिखाये जा रहे छोटे छोटे सूखे सूखे घास भी दिखाए--

एक कोचिंग दिखाया जा रहा कोचिंग पर एक कूलर रखा गया है जो वाइट कलर का है और कुछ चीयर्स हैं टेबल है।

एक लड़का फोन चला रहा है पानी का बोटल रखा हुआ पीछे बहोत सारे पोस्टर वोस्टर हैं।

येलो में है कुछ अ पिंक में है कुछ समान उमान शैंपू उम्पू है जो रखे गए हैं टेडी बियर्स है बहुत सारे और--

एक आदमी को दिखाया गया है जो माइक पर कुछ बोल रहा वह माइक लिए हुए है माइक स्टैंड रखी हुई है बहोत सारे तार है।

पीछे एक क्रिश्चियन का चिन्ह बनाया गया है एक क्रिश्चियन लेडीज भी है।

एक छोटा सा दुकान दिखाया गया है जिसमें बहोत सारे नल वल के सारे सामान ओमान रखे गए हैं।

कुछ को इसी तरह से सजा के रखा गया एक चेयर है चेयर्स पर टॉवल्स लगा--

बोर्ड भी उम्म कारपेट टाइप का बिछाया गया है अंदर पर दो आदमी हैं चियर्स है मार्बल का काम किया गया --

हॉल फाल्स सीलिंग्स का काम किया गया है बोहोत बड़ासा एक घड़ी है एक रूम टाइप का दिखाया गया है जिसके अंदर पर एक चेयर लगा हुआ है।